यहाँ नई मूवी लगती है रिलीज होने पे।

यहां देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है।

यह एक बड़ा सा हॉल है।